पेड़ पौधे के नीचे बाउंड्री वॉल हुआ हुआ है।

तस्वीर में एक बौद्ध मंदिर का फोटो नजर आ रहा है।

और डेक्स में व्हाइट और हल्के से उड़न कलर के सनमाइके लगे हुए हैं।

कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग कुर्सी में बैठ के खाने खा रहे हैं।

और दीवाल पर कुछ कुछ अवार्ड्स और तस्वीरे टंगी हुई है।

आदमी के मुंह पर माक्स लगा हुआ है।

तस्वीर में एक व्यक्ति एक बच्चे को हवा में उछाल रहा है।

रेस्टोरेंट में बहुत सारे टेबल कुर्सियां लगे हुए हैं।

एक ठो टोटो लाल कलर की है कुछ टोटो ब्लू कलर की है।

नीचे एक टायर है टायर का कलर काला है।

तीनों शेरवानी अलग अलग कलर के हैं।

फूल की दुकान में गुलाबी पीले और व्हाइट कलर की फुल रखी हुई है।

देखने से पता लग रहा है कि कोई फंक्शन होने वाली है।

जहां ढलाई आधी हो चुकी है और आधी बाकी है।

जो कि सबको निर्देश दे रहा है छत सीमेंट से बनी हुई है।

तस्वीर में एक ऑफिस का फोटो है ऑफिस में एक वाइट कलर का डेस्क लगा हुआ है।

सामने कुछ सीमेंट से बनी दिवाले भी नजर आ रही है।

बाये साइड भी एक आदमी खड़ा हुआ है जो गुलाबी कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है।

पंखा का कलर व्हाइट है और नीचे जमीन बहुत ऊपर खबर है।

नीचे होटल कुबेर पैलेस का बोर्ड लगा हुआ है जो की लाल कलर का है।